सभी व्यक्ति ने अपने सर पर सफेद रंग की टोपी लगा रखी है तथा इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी दिखाई दे रही है एक व्यक्ति ने गुलाबी रंग की शर्ट तथा काली पेंट पेहने हुए है बाकी अन्य तीन व्यक्ति सफेद रंग के कुर्ते मैं खड़े है।

इस चित्र में एक लैन्टर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में कुछ महिला तथा कुछ पुरुष कुर्सियों पे बैठे हुए दिखाई दे रहे है तथा कुछ महिला और पुरुष फ़ोन पर कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

तथा पीछे की तरफ कुछ झूले बने हुए दिखाई दे रहे हैं और पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है।